एक ठेला लगा है वह फल का ठेला है।

होटल है वहां पे दो बेंच पड़ी है और रेड कलर की कुर्सी पड़ी है पास में एक बहुत सारे पेड़ है एक जनरेटर दिखाई दे रहा है पास में गन्ने भी है इधर पेप्सी की बोतल भी लगी है।

वे एक फील्ड है वहाँ पे बेंच पड़े हैं।